और बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

दे रहा है और बहोत सी लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

एक बैट दिखाई दे रहा है।

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है।

और पानी की झील दिखाई दे रही है।

और बहोत से बैनर्स लगे हुए दिख रहे हैं।

और कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा हैं।